एक बोहोत बड़ा टॉवर दिखाई दे रहा है। ट टॉवर के इधर एक और बड़ा वो दिखाई दे रहा है जिसमें मूर्ति बनी है। ऊपर नीचे दोनों मूर्ति बनी हैं।

कुछ लोग सब्जिया बेच रहे हैं। तो कुछ लोग जमीन पर सब्जिया रखे हुए खम्बे लगे हुए हैं और बहुत सारे तार डले हुए एक बाइक भी दिखाई दे रही है। जमीन पर बोहोत सारा कचरा डला हुआ है और गन्दगी भी डली हुई है ब पेड़ की बगल से बोरे भी रखे हैं।